इसमें अलग अलग खंड बने हुए--

यह एक शादी का स्टेज है।

यह एक गोदाम है।

यह एक मंदिर का ग्राउंड --

इसमें दो व्यक्ति खड़े हैं।

एक बस येलो कलर और एक दूसरे कलर की है।

यहां दो बच्चे भी खड़े--